और इसी के साथ हमे खम्बे भी दिखाई दे रहा है बड़ा सा टावर --

और इसी के साथ नीचे यहाँ पे दीये भी जले हुए दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे भी हमे और भी सामान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे एक बुक डेपो दिखाई दे रहा है | जिसमे मतलब बहुत सारे किताबे रखी हुई हैं ।

यहाँ पर हमे बोहोत सारे डोरमेट दिख रहे है।

जो की ब्लैक कलर से और येलो कलर से पेंट है।

और घर दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे एक के ऊपर एक।

अ मतलब कटपुतली टाइप भगवान की मूर्तियां दिखाई दे रही है।